यह बाज़ार है जहाँ पर बहुत सारे सामान मिल रहें हैं। यहाँ पे कुछ ठेले लगे हैं जो एक ठेला जी मिस्टी भंडार चौमिन चाट मिठाई बहुत सारे ठेले लगे हुए हैं।

एंड एक बड़ा सा पेड़ है बीच में उसके बगल में छोटे से घर है बगल में निवारी की पूंजी है और उसके बगल में पहाड़ है।